यहाँ एक सड़क दिख रही है सामने एक आंटी भी हैं गार्डन बना हुआ है जहाँ एक अ-अ-अ औरत साइकिल पकड़ी हुई हैं साइकिल --

यहाँ पर भी एक दो घर दिख रहा है बड़ा-सा रेड कलर का उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है घर के ऊपर रेड और वाइट कलर की पुताई है।

यहाँ भी बोहत सारी मशीनें रखी हैं सामने पर्दा लगा है सीनरी लगे हुए हैं साइड में --

यहाँ एक जगह दिख रही है जहाँ नीचे बहुत सारी हरी-भरी घास है सामने की तरफ कुछ जगह बनी है जिस पर लिखा है बुनियाद केंद्र।

स्पेशल बहुत लोगो ने अच्छी तरह लिखी उसके पास एक और पुती हुई दीवाल है जिसके ऊपर श्री मन लिखा हुआ है।

यहां भी एक जगह नजर आ रही है जहां सामने की तरफ एक ग्रीन पहना हुआ है नीचे गाड़ियां खड़ी हुई है साइकल खड़ी हुई है।

सामने एक कांच लगा हुआ है ऑटो का मुंह कांच की तरफ है पीछे उसकी गाड़ी दिख रही है एक ओर नीले रंग की कुछ--

उसमें भी होना था यार सामने एक मूर्ति रखी हुई है दो लोगों की दोनों के हाँथ एक दूसरे से जो पकड़े हुए है पीछे की तरफ एक अलमारी है जिसके अंदर बहुत सारे सर रखे हुए है साइड में एक बड़ा सा कार्ड लगा हुआ है।

गेट के बाहर सड़क है सड़क गीली हो रही है गेट का और इनके गेट का रंग सफेद है और जालिया वाला नेट है साइड में रेड कलर का कुछ केबिन बना हुआ है छोटा- सा।

यहां पर एक जगह नजर आ रही है कुछ बर्तन जैसा है उसके अंदर बहुत सारा फूल उगे हुए हैं।